ऐसा लगता है जैसे ये नौटंकी करने वाली दिखाई दे रही है और काफी जैसे हमें दिखाई दे रही है नीचे अह काफी डब्बे से दिखाई दे रहे हैं और साइड में गुब्बारे कुर्सियाँ वगैरह जैसे घी मुझे शो दिखा रही हो तो ऐसा अ --

और जो कि देखिए पत्थर की बनाई गई है और काफी शानदार दिखाई दे रही है।

जैसा कि हम देख रहे है हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये कार्यालय --

कुर्सियाँ इसलिए लगाई जाती है जो कि बडे बूडे बूढ़े लोग हैं और जो कि इम द अम जो कि बडी बुडी लेडिज या अम जेन्ट्स होते हैं उनके बैठने के लिए बनाई जाती हैं जो कि थक जाएं और बैठ जाएं इसीलिए बनाई जाती हैं और जो कि काउन्टर लगे हुए हैं।

जैसा कि हम आपके सामने देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है और ये है ये है पैदल क्रॉसिंग जो कि और ये है फुटपाथ --

जैसे कि हम देख रहे हैं फूलों द्वारा बनाया गया मोर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छी सजावट की गई है पार्टी की जो कि हमें कपड़े द्वारा जो कि टेंट के कपड़ों द्वारा की गई है और --

तो इस बैंक से हमें काफी लाभ होता है जैसे कि ये बैंक की प्रकार की होती हैं। पंजाब नैशनल ऑफ इंडिया स्टेट बैंक और की तरह कि रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक भी होती हैं जो कि हमें इन बैंकों से काफी लाभ मिलता हैं जो कि हमें ब्याज भी मिलता है। हमारा पैसा भी एक जगह इकट्ठा बना रहता है।

जैसा कि हम आपके सामने देख रहे हैं कि रेल के अंदर बैठ कर और बाहर का आपको सीन दिखा रहे हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है ये स्टेशन एक इधर स्टेशन एक उधर उधर भी स्टेशन दिखाई दे रहा है।

जब गोड़ हमारा चुमड़ा होता है तो इसी मशीन से नापा जाता है और ये है और ये काफी जैसे कि देख रहे हैं नाप भी रहे हैं रोड । अ रोड बनने की में --